तीन-तीन चेयर बैठने वाला लगा हुआ है। आगे में आईना है। एक आदमी का दृश्य दिखाई जा रहा है। ओर इधर से खाली खाली आ रहा है। चार आईना है उसमे से तीन आईना इधर से दिखाई दे रहा है।

देखने में काफी अच्छा है यहाँ से यहाँ पे दो तीन टो टो लगा हुआ है।

आगे में वृक्ष है जोकि दिखाई दे रहा है उजला-सा है। पेंट किया हुआ वृक्ष को भी दिखो। नीचे में दुबरी को अच्छी तरह से साफ़ किया गया है।

ऊपर में कुछ आसमानी कलर का दिखाई दे रहे हैं। मकान बहुत व्हाइट दिखाई दे रहा है इसमे से । और ये देखने मे बहुत सुंदर ऐसा है।